बहुत सारे इंडियन ऑयल के ट्रक खड़े हुए हैं।

बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं।

हमें इस फोटो में किसी कैफ़े का दृश्य दिखाया गया है।